यह चित्र एक बहुत बड़ी नदी का नजर आ रहा है नदी का पानी हल्का हरा नजर आ रहा है।

इमारत की दीवार की ऊपर संतरी रंग का झंडा भी नजर आ रहा है वही सामने की और कुछ व्यक्ति अंदर की और इमारत मे जाते नजर आ रहे है।

पीछे की और कुछ बड़े खेत भी नजर आ रहे है जहा हरे रंग के छोटे या बड़े वृक्ष लगे नजर आ रहे है।

वह कुछ मिट्ठी के ढेर भी लगी नजर आ रहे है ऊपर की और आसमान का रंग नीला है।

नीचे की और फर्श का रंग भी काला व सफ़ेद नजर आ रहा है वह पीछे की और कुछ पंखे लगे नजर आ रहे है।

पीछे की ओर कुछ पुरानी इमारत भी बनी नजर आ रही है वह कुछ बड़े वृक्ष लगे नजर आ रहे है जिनका रंग हरा है।

यह चित्र एक कॉलेज के बाहर का नजर आ रहा है जहा कॉलेज की मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा लाल रंग की दीवर बनी नजर आ रही है।

यह चित्र एक बहुत बड़े खुले मैदान का नजर आ रहा है जहा सामने की और बहुत सारा हरा घास लगा नजर आ रहा है पीछे की और काफी लंबी इमारत बनी नजर आ रही है जिसका रंग सफ़ेद है ऊपर आसमान का रंग सफ़ेद नजर आ रहा है।

यह चित्र एक बाग का नजर आ रहा है। बाग के मुख्य द्वार पर लोहे का गेट नजर आ रहा है जिसका रंग सफेद है।

यह चित्र एक दीवार का नजर आ रहा है दीवार के उपर एक काले रंग के बोर्ड के उपर कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है सामने की ओर एक भूरे या सफ़ेद रंग का मेज रखा हुआ नजर आ रहा है।